newborn child care यानि नवजात शिशु की देखभाल सम्बन्धी spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में निम्न के बारे में सीखेंगे :
नवजात शिशु की देखभाल care करें
एक नयी माँ के सामने आने वाली सामान्य समस्याएं और
उनका समाधान कैसे करें
डॉक्टर anjali अनीता के घर में प्रवेश करती है और उसके नवजात बच्चे पर अपनी खुशी व्यक्त करती है
डॉ anjali देखती है कि anita अपने बच्चे को गलत तरीके से पकडे हुए है
वह anita से बच्चे को पकड़ते समय सावधान रहने को कहती है
डॉ anjali दिखाती है कि बच्चे के dr को कैसे सहारा दें और कैसे पकड़ें
जब बच्चे को सीधे पकड़ना हो और
जब नीचे लेटाना है
doctor anita को सलाह देती है कि बच्चे को कभी भी कठोरता से न पकड़ें
anita doctor से कहती है की वह इस सब के लिए नयी है
और अपने नवजात शिशु की अच्छी देखभाल के लिए पूछती है
डॉक्टर anjali ख़ुशीख़ुशी सहमत होती है
वो पहली और महत्वपूर्ण बात बताती है
नवजात शिशु को लेने से पहले साबुन या राख से हाथ धोएं
युवा शिशुओं में अभी तक सबल प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण नहीं हुआ है
अतः वे संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं
anita doctor से पूछती है अपने बच्चे का कितनी बार भरण करना चाहिए
doctor anita को बताती है कि नवजात शिशु को प्रत्येक 2 से 3 घण्टों में भरण की ज़रुरत होती है
वह बताती है कि स्तनपान बच्चे के स्वस्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है
और बच्चे के प्रतिरक्षी तंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है
और अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो बच्चे को प्रत्येक स्तन पर 1015 minutes तक स्तनपान करने का मौका दें
फिर anita doctor से formulafeeding यानि ऊपर से खिलाने का तरीका पूछती है
महिला doctor कहती है कि
अगर आप अपने बच्चे को उदाहरण के लिए दूध के विकल्प दे रही हैं तो बच्चा एक बार में लगभग 6090 ग्राम तक ग्रहण कर सकता है
फिर anita doctor से पूछती है कि वो अपने बच्चे को कब और कैसे नहलाए
doctor बताती है कि शुरूआती कुछ हफ़्तों तक बच्चा बहुत नाज़ुक होता है
वह कहती है कि वो बच्चे को तब तक गीले कपडे से पोछे जब तक
a गर्भनाल न निकल जाय
b कटा हुआ घाव न भर जाय
c पूरी तरह से नाभि न भर जाय
doctor बताती है कि शुरूआती दिनों के बाद हर हफ्ते 2 से 3 baths हल्के साबुन से नहलाना बच्चे के लिए पर्याप्त है
यह बच्चे के पहले साल के दौरान जारी रख सकते हैं
बारबार नहलाना त्वचा को खुष्क बना सकता है
फिर डॉ anjali दिखाती है कि बच्चे के कुछ निशान हैं
anita डर जाती है
वो डॉ से पूछती है इन निशानों की देखभाल care करें
doctor बताती है कि ये निशान गीले diaper के कारण होते हैं
आगे वह कहती है कि आपको बच्चे का कपडे का diaper बारबार और मल त्याग के बाद जितना जल्दी हो सके बदलना चाहिए
उस क्षेत्र को हलके साबुन और पानी से साफ़ करके सूखा करें
फिर नमी रहित रखने के लिए थोड़ा बच्चों का powder लगाएं
आगे doctor बताती है कि अगर आप कपडे का diapers उपयोग कर रहे हैं तो आप उन्हें कीटाणुनाशक जैसे dettol के साथ गर्म पानी से धोएं
यह भी अच्छा विचार है कि दिन में कुछ समय के लिए बच्चे को बिना डाइपर के रहने दें
anita डॉ anjali का धन्यवाद करती है और कहती है कि वो इन बातों का ध्यान रखेगी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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
इस ट्यूटोरियल को देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद